और कुल मतलब मतलब अच्छे कलर में रहे।

और पान छे आदमी हैं। दो खड़े हैं एक झोरा ले के खड़े है। एगो साइकिल है।

आ एक मोटरसाइकिल है तो एक है दो चा पी रहे हैं।

ये मार्केट है मिर्च बहुत सारा है एगो कैरट है कैरट में कुछ आलू है और --

और कुछ सामान लादा जा रहा है।

उम हाई होर्लिक्स है।

एक त्रिशूल भी है। त्रिशूल के ऊपर तीन निम्बू और एक फूल है और एक साड़ बना है एक।

उम तोते का उम पलेट में कुछ खाने ने --

पीले क्लर का फ्रॉक पहिना है।